जहाँ पर बहुत सारी कुर्सियां व टेबल रखी हुई है।

खड़ी महिला उन लड़कियों को नृत्य सीखा रही है।

नर्सिंग एंड फर्मा मेडिकल ट्रैंनिंग सेंटर --

हर ई-रिक्शे पर ई-रिक्शा चलाने वाला बैठा है।

आगे जाकर दो बड़े-बड़े पेड़ भी है उन पेड़ों पर --

चर्च के दरवाजे के अंदर कोई जा रहा है।

यहाँ मकान के नीचे एक बड़ी-सी गाड़ी खड़ी है।